यहां पे सामने में रेड कलर का रजिस्टर रखा हुआ है।

सामने में कुछ स्टिकर वगैरह दिखाई दे।

बड़ा सा मिरर लगाया गया है।

अजीब तरीकों से उनमें से खून भी निकल रहा है।

ये बोरे संभवत किसी दुकान या गोदाम में रखे हुए हैं।

स्टील का बाउंड्री टाइप का लगाया हुआ है यहां पे।

सामने में शिव मंदिर भी है जिसमें झंडा भी लगाया हुआ है।

बगल में एक ठेला लगा हुआ है दुकान के बाहर।

लाइटें जल रही है पेंट किया हुआ है यलो कलर का।

तस्वीर में कोई रेगिस्तान वगैरा का सीन दिखाई दे रहा क्योंकि हर जगह बालू ही बालू है।

रेत ही रेत है और बड़ा सा पहाड़ भी है पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

जैसे ब्लू ग्रीन रेड येलो पिंक --

टांगा हुआ है बहुत सारे शूज स्लिपर्स सैंडलस बनाए हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे चेयर्स लगाए हुए हैं सब चेयर पे बच्चे बूढ़े बड़े सब बैठे हुए हैं रात का समय हो रहा है।

अलग अलग प्रकार की लाइट्स भी जल रही है एंट्री गेट अलग है।

रोड के उस पार बहुत बड़ा खेत है।

खेत वेत का सीन है या बारी वारी का।

फ्लावर्स जो है मेरीगोल्ड के हैं।

मेन सैलून जिसपे लिखा हुआ है बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून ।

इस तस्वीर में सामने बड़ा सा खेत दिखाई दे र--

सब मैकेनिक्स लग रहे

बड़ा सा गोदाम टाइप का लग रहा फैक्ट्री है यहां पे।

लाइटें जल रही है और ग्रीन ग्रीन गेट्स भी दिखाई दे रहा है।

इस पर तस्वीर में सामने ट्रैक्टर के कनेक्ट करने वाला टाली रखा हुआ है तीन थे।

यह तस्वीर एक आयोजन स्थल कि है जहां सजावट की गई है।

पृष्ठभूमि में रंगीन गुब्बारे और रोशनी दिखाई दे रही--

ये नया ओपन हुआ--

डोर ओपन है ऊपर में लिखा हुआ है लातेहार।

बगल में एक और दुकान है।

वर्कआउट करने वाले मशीन्स रखें--

तस्वीर में सामने बहोत सारे लोग खड़े हैं और काउंटर पे--

तीनों ने शर्ट और पैंट पहना है।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा गोदाम--

रेड कलर का कारपेट बिछाया गया--

यहां पे हर जगह लोटस का साइन बनाया हुआ है।

इसमें बहुत सारे फूल लगाए गए हैं।

बगल में एक जनरेटर है।

इस तस्वीर में सामने बाद से एक स्कूल बनाया हुआ है और बड़ा सा ग्राउंड है जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जोकि दौड़ रहे हैं।